यहां पर हामॆ एक योगा क्लास दिखाई दे रहा है यहां पर लड़कियों को योग करते हुए देख पा रहे हैं।

बड़े ही सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है हमें यहां पर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है बहुत से लोग हमें यहां नज़र आ रहे हैं।